यह तस्वीर एक लाइब्रेरी के सामने से ली गयी है जिसका द्वार कांच से बनाया गया है।

यह तस्वीर मे हमें एक सुन्दर सा नज़ारा देखने को मिलता है।

यह तस्वीर हमें एक जंगल सफारी करने वाले स्थान की लग रही है।

उसके पीछे काफी सारे ऊँचे-ऊँचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं व छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं उसके आस-पास काफी सारी झाड़ियां भी --

इस तस्वीर मे हमें एक नौका दिखाइ दे रही है जिसपे काफी सारे व्यक्ति सवार हैं।

उसकी टेबल हरी रंग की व कुर्सी काले रंग की है वह अपने मोबाइल में कुछ चीज़ें चला रही है वह व्यस्त नज़र आ रही है।

यह तस्वीर एक पा-झील की है जिसके दोनों किनारों पे काफी सारे पेड़ देखने को मिलते हैं।

यहाँ पे एक सीमेंट से बनी हुई दिखाई दे रही है जो की काफी काली हो चुकी है।

सड़क पर पुलिस के तीन बेरिकेड भी लगे गए हैं जिनका रंग पीला है।

इसकी दीवारें ह-हरे रंग की व लाल रंग की है जहाँ पे बाहर शौचालय का बोर्ड भी लगा गय-हुआ है। उसके ऊपर हरे रंग की टंकियां --

यह तस्वीर एक पहाड़ी इलाके की प्रतीत हो रही है जिसमें हमें दो घर दिखाई दे रहे हैं एक पीले कलर का है व दूसरा नील कलर का।

यह तस्वीर शाम की सुन्दरता को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे सूर्य उद अस्त होते हुए हमे नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक कार्यालय की नज़र आ रही है जिसके कबरडो के अंदर काफी सा जिसमे काफी सारी कबोर्ड मौजूद हैं।